नमस्कार दोस्तों getting started with lists पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि ipython console पर बुनियादी पाइथन कमांड कैसे चलाएं
list क्या है
ctrl+alt+t एक साथ दबाकर टर्मिनल को खोलें
टाइप करें ipython3 और एंटर दबाएं हम अब ipython प्रोम्प्ट पर हैं
mylist नामक वेरिएबल के साथ list परिभाषित करें
type करें
python में strings हमेशा single या double quotes में रखे जाते हैं
अब प्रविष्ट करें type brackets में mylist और एंटर दबाएं
यहाँ type एक फंक्शन है जो वेरिएबल का datatype रिटर्न करेगा
जैसा कि हम देख सकते हैं lists में विभिन्न datatypes के एलिमेंट्स हो सकते हैं
पहले टाइप किए गए कोड में mylist नाम एक वेरिएबल है
python में वेरिएबल या तो एक alphabet या एक underscore से शुरू होना चाहिए
वे संख्याओं से शुरू नहीं हो सकते और python keywords के समान नहीं हो सकते हैं
आप keywords के बारे में सीखेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे
keywords के कुछ उदाहरण हैं for if else elif while in def or and
वेरिएबल नाम में spaces या punctuation या arithmetic अक्षर नहीं हो सकते हैं
ये कुछ मान्य और अमान्य वेरिएबल नाम हैं
अपनी lists पर वापस जाते हैं list बन सकती है जैसे num underscore list is equal to square brackets में one comma two और एंटर दबाएं या
x equal to square brackets में quotes में a comma quotes में b और एंटर दबाएं
अब बिना एलिमेंट्स के एक खाली list बनाएं
टाइप करें myemptylist is equal to open और close square brackets और एंटर दबाएं यह बिना किसी एलिमेंट के एक खाली list है
हम list के एक एलिमेंट को इसके अनुरूपी index या position का उपयोग करके ऐक्सेस कर सकते हैं
एलिमेंट्स की index value 0 1 2 और इत्यादि से शुरू होती है
एलिमेंट्स को आखिरी से ऐक्सेस करने के लिए negative indices उपयोगित हैं जो 1 2 और इत्यादि से शुरू होते हैं
विशिष्ट list element को प्राप्त करने के लिए सिंटैक्स है
टर्मिनल पर जाएं
टाइप करें mylist square brackets में zero और एंटर दबाएं
टाइप करें mylist square brackets में one और एंटर दबाएं
विडियो रोकें इसका अभ्यास करें और पुनः विडियो चलाएं
हल के लिए टर्मिनल पर जाएं
टाइप करें mylist square brackets में minus one और एंटर दबाएं जैसा कि आप देख सकते हैं आपको आखिरी एलिमेंट प्राप्त होता है जो one point two three four है
हम list के अंदर list बना सकते हैं
this property makes यह प्रोपर्टी lists heterogeneous data structures बनाती है यह list के अंदर list के लिए सिंटैक्स है
वेरिएबल doublelist के लिए list में list शामिल करें
यहाँ दिखाए गए अनुसार कोड टाइप करें: यहाँ b c d list में list है जिसे list के अंदर square brackets में दर्शाया गया है
अब doublelist से कुछ एलिमेंट निकालते हैं
हम b c d square brackets में के रूप में आउटपुट देख सकते हैं क्योंकि index value one इसके एलिमेंट के रूप में list के अंदर list रखती है
अब list के अंदर list से b नामक विशिष्ट एलिमेंट ऐक्सेस करने का प्रयास करते हैं
इसके लिए टाइप करें: doublelist square brackets में one square brackets में zero और एंटर दबाएं
यहाँ पहला parameter मुख्य list में list के index का प्रतिनिधित्व करता है
दूसरा parameter list के अंदर list में b की index value का प्रतिनिधित्व करता है
विडियो रोकें निम्न का अभ्यास करें और पुनः विडियो चलाएं
list doublelist में एलिमेंट and प्राप्त करने के लिए क्या कमांड है
negative indices का उपयोग करके आप and कैसे प्राप्त करेंगे
list doublelist से आप एलिमेंट d कैसे प्राप्त करेंगे
हल आपकी स्क्रीन पर है
हम list में एलिमेंट्स की संख्या जाँचने के लिए len फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं
mylist में एलिमेंट्स की संख्या पता करें जिसे हमने पहले बनाया है
टर्मिनल पर जाएं और स्क्रीन साफ करें अप ऐरो की दबाकर mylist को रिकॉल करें और एंटर दबाएं
टाइप करें len parentheses में mylist और एंटर दबाएं and press enter हमें mylist की लंबाई four प्राप्त होती है
हम append फंक्शन का उपयोग करके list में एलिमेंट जोड़ सकते हैं
यह फंक्शन list के आखिरी में एलिमेंट जोड़ेगा
सिंटैक्स हैः variable dot append parentheses में जोडे जाने वाला एलिमेंट
टर्मिनल पर जाएं
टाइप करें mylist dot append parentheses में six और एंटर दबाएं
अपडेट mylist जाँचें टाइप करें mylist और एंटर दबाएं हम देख सकते हैं कि mylist के आखिरी में sharp और six जुड़ गया है
हम lists से एलिमेंट हटा भी सकते हैं ऐसा करने के दो तरीके हैं एक del keyword के साथ index का उपयोग करके है
अन्य तरीका remove फंक्शन का उपयोग करके वेल्यू द्वारा एलिमेंट को हटाकर है
टर्मिनल पर जाएं
फिर से टाइप करें mylist और एंटर दबाएं हम देख सकते हैं कि एलिमेंट eggs list से डिलीट हो गया है
mylist list से एलिमेंट hundred डिलीट करें
क्या होगा यदि एलिमेंट्स की पुनरावृति होती है
यह देखने के लिए एक छोटा प्रयोग करते हैं टाइप करें mylist dot append parentheses में quotes में spam और एंटर दबाएं
टाइप करें mylist और एंटर दबाएं यहाँ अपडेट mylist है
इसमें एलिमेंट spam दो बार है एक list की शुरूआत और दूसरा आखिरी में है
अब mylist dot remove parentheses में quotes में spam टाइप करके एलिमेंट spam को हटाएं और एंटर दबाएं अपडेट mylist जाँचें
हम देख सकते हैं कि केवल पहला spam हटा है
फंक्शन remove क्रम में पहले एलिमेंट को हटाता है याद रखें del keyword index value द्वारा एलिमेंट हटाता है
remove फंक्शन का उपयोग करके हम index value के साथ भी एलिमेंट को हटा सकते हैं
एक उदाहरण के साथ प्रयास करें टाइप करें k is equal to square brackets में one comma two comma one comma three और एंटर दबाएं
फिर टाइप करें k dot remove parentheses में k square brackets में two और एंटर दबाएं टाइप करें k और एंटर दबाएं हम आउटपुट 213 देख सकते हैं
चूँकि यह k square brackets में two द्वारा रिटर्न की गई पहली उपस्थिति को डिलीट करता है जो कि one है
विडियो रोकें निम्न का अभ्यास करें और पुनः विडियो चलाएं
हल आपकी स्क्रीन पर है
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
हमने यह भी सीखाः
append फंक्शन का उपयोग करके list में एलिमेंट जोड़ना
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
और उत्तर हैं
2 हाँ list list सहित सभी अन्य data types को रख सकता है
कृपया अपनी समयबद्ध queries इस forum में post करें
कृपया पाइथन पर अपनी सामान्य क्वेरी इस फोरम में पोस्ट करें
fossee टीम tbc प्रोजेक्ट का संयोजन करती है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएं
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद